यह एटीएम बहुत ही बड़ा है।

यहाँ पर बहुत सारे बकरियों का पालन पोषण किया जाता हैं।

जिससे सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाने और ले आने में सहायता करती है।

इस बार के इलाके में दो पुतले भी बनाए गए है।

इस पोलटियो के फार्म मे बहोत सारे मुर्गे एवं मुर्गियों को पाला जाता हैं।